और फिर बांस का भी अ पेड़ दिख रहा है।

यह रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसकी दीवारें जो हैं पिंक और ग्रीन कलर से बनी हुई है।

व्हाईट कलर का शर्ट है आ बैग लटकाया हुआ है और शॉप के अंदर एक पंखा है जो सीलिंग फैन में दिख रहा है।

और अ अ दीवार पे बहुत सारा फूल है नीचे कारपेट रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ है |

ये सालून में एक बंदा खड़ा हुआ है और-- कुछ देख रहा है ।

टेबल पे फूल बना हुआ टोकरी दिख रहा है और टेबल के चार पाए सिल्वर कलर से पैंट किए हुए हैं।

आसमान साफ़ है कुछ हलके से बदल के साथ और निचे जो मैदान है मैदान में बहुत सारे पेड़ --

और पिजड़ा जो है अ- वो बड़ा सा बना हुआ है।

ये खेती हो रही है खेती में कुछ लोग अ जो है हाथ --

हात में दवा लिए हुए हैं के अंदर वो चिढखव कर रहे हैं और जो इसके पौधे हैं वो ग्रीन हैं।

और कुछ ईंटे टूटी हुई है। दीवारे इसके टूटी हुई हैं। नीचे ईटा बिखरा हुआ है।

ये साउथ की बहुत पुरानी कॉफ़ी हाउस है और और इसमें निचे बहुत लोगे कॉफी पी रहे हैं | अ अ --

पेंटर हैं जो एक बड़े से दरवाज़े को पेंट कर रहे हैं एक लेबर हैं उनकी सीढ़ी पकड़ के उनकी सहायता कर रहे हैं।

पिक है प्लस ब्लू कलर का गैलन में है और बाकी छोटे-छोटे बहुत सारे मेडिसिन रखे हुए हैं।

आ कार्पेट बिछे हुए हैं। दो लोग बैठे हुए हैं।

और ये जो डेकोरशन है वो ब्लू कलर में है ब्लू है रेड है येलो है इसमें सामने चार गुमबज दिखाई दे रहा है।

तो कोई पिंक कलर के हैं कुछ लोग इसमें पूजा कर रहे हैं |

बॉउन्ड्री किया हुआ है। ग्राउन्ड में अच्छा ग्रीन है। एक बंदा बॉउन्ड्री से देख रहा है।

ये पुस्तकालय है पुस्तकालय में कुछ लोग बुक खरीदने आए हैं और सामने बहुत सारा अ पेन कॉपी सब दिख रहा है।